इसके ऊपर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लिखा गया है। इसके बगल में पेड़ और फूल भी नजर आ रहे हैं।

बहोत सारे सामान रखे गये हैं। यह बिलकुल नये लग रहे हैं। दुकान के ऊपरी हिस्से में बहोत सारे बल्ब प्रकाशित हो रहे हैं।

कई दुकानें नजर आ रही हैं। यहाँ कपड़े दिखाई दे रहे हैं। टीन की छावनी भी है। बीच में दरवाजा बना हुआ है।

ये बीच से रस्ता बना है। इसपे कई पत्ते और सूखी मिट्टियाँ भी नज़र आ रही हैं ।

पेड़ की डालियाँ लटकती हुई दिखाई दे रही हैं। पेड़ पर एक बास का सीढ़ी लगा है। एक सीमेंट की भी रखी गई --